यहा बहुत ही बहुत ज्यादा भीड़ है मार्केट मे टेम्पो दिखाई दे रहे है।

देखिए पहाड़ के चारों ओर से घिरा हुआ एक अच्छी खूबसूरती जगह है।

ये देखिए फूड ट्रैक मतलब ये होटल है ये यहां पे अनेक प्रकार के खाना मिलते है सब कुछ खाने वेगरा के।